सामने में जिम के समान भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत ज्यादा बुद्ध की फोटो दिखाई दे रही हैं।

अलमीरा के अंदर कई सारे बुध्दे के।

इन लड़कियां के चेहरे ब्लर्स हैं।

और दो लंबा सा पूल भी लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रही है।

और आसपास कई सारे लोग भी है और सामने में बिल्डिंग भी है।

उसमें कई सारी मिठाई भी रखा हुआ है।

और एक लड़के के पैर भी दिखाई दे रही है।

सामने में एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है।

आस पास आस पास कई सारे घास फूस भी है।

जो ब्राऊन और ग्रे कलर का है।

नीचे के जमीन में टाइल्स भी लगाया हुआ है।

और कई सारे आलमीरा भी रखा हुआ है।

आलमारी के ऊपर कई सारे सामाने भी रखा हुआ है।

यहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

और सामने में ब्राउन कलर की कर्टन भी है।

सामने में एक सड़क भी है।